वहीं दायी ओर देखे तो हमें एक बड़ी सी --

जैसे कि हम देख रहे है सामने हमें हारमोनियम दिखाई दे रहा हैं।

और कॉपी रखी गई हैं वहीं पे नीचे की ओर देखें तो हमें कुछ --

मोर का रंग नीला व हल्का हरा --

जे.सी.बी. दिखाई दे रहा है जो जमीन खोद रहा है।

पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं। एक तार भी दिखाई दे रहा है।

पर वहीं बाईं ओर देखे तो हमें दो बड़े-बड़े से --